और उस साइड में एक फुटबॉल दिखाई दे रही है फुटबॉल का कलर व्हाइट ब्लैक कलर की है इस मैदान में मिट्टी ही मिट्टी है नजर आ रही है।

ये रंग बिरंगे कलर में लाल पीला ब्लू ब्लैक सब कलर में टंगे हुए हैं।

यहाँ पर मुझे बहुत बड़ी एक नदी दिखाई दे रही है नदी के अंदर एक नाब बड़ी -सी दिखाई दे रही है नाब के अंदर कुछ व्यक्ति बैठे हैं।

भी टंगी हुई हैं एक गुड़िया खड़ी हुई दिखाई दे रही हैं उस गुड़िया के पुतले ने सलवार कुर्ती--

इस दुकान के सामने मेन गेट फ्लावर से डेकोरेशन हो रहा है और यहाँ पर बहुत सारे जेंट्स और लेडीज़ भीड़ लगाए खड़े हुए हैं।

यहाँ पर मुझे बहुत बड़ा मंदिर दिखाई दे रहा है मंदिर मे इनका डेकरैशन फूलों की मालाओ से हे।

ऑरेंज रेड येलो कलर की माला से डेकरैशन हे यहाँ पर मुझे माइक लगे हुए दिखाई दे रहे है केले के पत्ते लगे दिखाई दे रहे है।

यहाँ पर मुझे झरना दिखाई दे रहा है झरनों पे से पानी चटटानों पर बहता हुआ दिखाई दे रहा है।

झरने के अगल-बगल बहुत हरे-भरे घने पेड़-पौधे दिखाई दे रहे है यहाँ पर बड़ी-बड़ी चटटाने भी दिखाई दे रही है।

मुझे एक नदी बड़ी सी नदी दिखाई दे रही है नदी के किनारे साइड पर कुछ पेड़-पौधे लग रहे है।

यहाँ पर मुझे बहुत बड़ी जिम दिखाई दे रही है जीम के अंदर बहुत प्रकार की मशीने रखी हुई है ये सारी मशीने जिम करने की मशीन है।

एक लड़का कांच मे देख कर जीम कर रहा है एक नंबर देख कर जिम कर रहा है।

यहाँ पर मुझे बहुत बड़ी वी_आई_पी जिम दिखाई दे रही है जिम के अंदर बहुत बड़ी-बड़ी जिम मशीन रखी है।